सात लोग हैं तीन लोग बैठे हुए हैं तीन चार लोग खड़े हुए हैं वाइट कलर के--

इस पे उनको फूलों की माला भी डाली हुई है।

अंडरस्टोरन की फैन है कूलर दिख रहा है।

एकचार्ट की दुकान है यहां पे बहुत सारी वैरायटी चार्ट दिख रही है।

एक साथ रखे हुए तीन चेयर है एक प्लास्टिक वाली चेयर है क्रीम कलर की।

किराना के दुकान में अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।

कुरकुरे का राग लगा हुआ है फ्रिज है फ्रिज पर लिखा हुआ है पेप्सी --

और इसके साथ मैचिंग के रंगभी है।

यहां पे कंप्यूटर रखा हुआ है माउस दिख रहा है टेबल है एक आदमी है।

येएक बुक स्टॉल है यहां पे बहुत सारे बुक्स रखी हुई है।

और हाफ दिख रही है और यहां पे तीन स्टैंप लगे हुए हैं सामने के साइड पीछे के साइड --

एक ए_टी_एम का सेंटर है इस ए_टी_एम के सेंटर पे ऊपर लिखा हुआ है सी यू_बी ए_टी_एम --

ये एक रास्ता है रास्ते पर फोरव्हीलर् --

विंडो है लाइट का खंभा है लाइट है।

एल_सी_डी देख रहे हैं लिखा हुआ है।

और यहां पर पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला और छोटे वाले पेड़ भी दिख रहे हैं गार्डन के साइड है।

चर्चमें एक लेडीज है जो माइक में बोली जा रही है इसके अलावा यहां पे--

एक चेयर हैएक चेयर ऊपर चार लोग बैठे हैं दो चेयर खाली हैऔर--

यहां पे बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं।

दो तीन फैन दिख रहे हैं लाइट्स हैं।

झाड़ से लकड़ी के कुछ बना हुआ है झोपड़ी दिख रही है बहुत सारे झाड़ है रेड कलर की मिट्टी है।

ये एक फर्नीचर की दुकान है यहां पे फर्नीचर --

का काम हो रहा है एक बेड बनाया जा रहा है बेड और बन चुका है अभी पूरा काम बाकी है बाहर रास्ताहै।

एक आदमी लेटा हुआ फेन है घडी है टेबल पर बुक है स्सिस्सर है पेन है।

एक ज्वेलरी शॉप है यहां पे चांदी की--

होटल में टेबल चेयर लगी हुई है और यहां पे ए_सी दिख रहा है फैन है फ्रिज है और यहां पर टेबल है।

कार्ड का बॉटल दिख रहा है टिशू पेपर हैं।

यहां पे मिट्टी है यहां पे कचरा काढ़ा जा रहा है ।

कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके सामने--

ये एक ऑफिस है इस ऑफिस पेदो लैपटॉप है ।

काउंटर है वह एक आदमी बैठा हुआ है चेयर है ।

साइकल का पीछे का साइड का दिख रहा है बाइक है ।

पीछे के साइड में घर दिख रहे है लाइट के खंबे है पॉवर हैं।

लेट कर एक्सरसाइज कर रहा है ।

सारे एक प्रकार के टूल्स है फैन है ए_सी हैं।

पूजा रिसोर्ट ऐसे लिखा हुआ है बिल्डिंग के बाहर के साइड फोर व्हीलर खड़ी हुयी है ।

कुर्सियों पर वाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है कवर किया इसको--

चॉकलेट बिस्किट और बॉक्सेस रखे हुए हैं सारा कुछ किराना का माल मिलता है यहां प--

और सदन का नाम है ए वन और यहाँ पे लडके रुके हुए है ।

स्टूल है पानी का जार है ।

एक आदमी है दो बच्चे एक छोटा बच्चा है एक उसने गोद में लिए रखा है ।

ये एक शोरूम है टू व्हीलर का शोरूम है ।

पेड है दो और बड़े वाले एक चेयर है ।

लैपटॉप रखा हुआ है माउस दिख रहा है पेन है कॉपी है ।